यहां पर कुछ दवाइयां ल रखी हुई है यहां पे स्विच बोर्ड है यहां पर एक लिटमस पत्थर रखा हुआ है।

कुछ साड़ियां रखी हुई है कुछ कपड़ों के टुकड़े रखे हुए हैं और यहां पर एक सीडीया वगैरा रखी हुई है।

अब मंदिर के अंदर कुछ खाने के सामान रखे हुए हैं एक आदमी सामने बैठा है।

जैसे कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं ये फोटो एक स्विमिंग पूल की है और यहां पर एक आदमी है जो नहाने जा रहा है।

यहां पर कोई यात्रीगण अंदर बैठे हुए हैं कुछ यात्री पटरियों पर घूम रहे हैं यहां पर ट्रेन रुकी हुई है कुछ कारण वछ।

यहां पर एक बालाजी स्वीट्स नाम से एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

जैसे कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि ये का हार्डवेयर की दुकान है और इसके दुकान के ऊपर टीन सेड तने हुए हैं।